इस इमेज में बहोत सारा डेकोरेशन हो रखा है।

इस इमेज में बहोत सारा डेकोरेशन हो रखा है इमेज में हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

इसमें हमें बहोत सारे बलूंस और फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहोत सारा सामान पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में कोई प्रोग्राम या कॉम्पिटीशन चालू है यहां बहुत सी खाने की चीजें दिखाई दे रही हैं।